ये एक चित्र है ये एक गुरुद्वारा हैं।

जो एक पार्क का है यहां पे झूले रखे हुए हैं।

यहां पे पीली कलर के बतख वाला झूला रखा हुआ है।

ढाबे पे कुछ सजावट है लाइटें लगी हुई हैं।

बाहर भी टेबल पर बहुत सारे इत्र रखे हुए है।

ये एक पेट्रोल पंप है यहां पे एक कुत्ता खड़ा हुआ है एक गाड़ी खड़ी हुई है।

जहां एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है।

आमने-सामने दो पुतले बने हुए हैं यहां पर कोई भी नहीं है।